यह एक बहुत बड़ा घर है।

और इसको बहोत ही सुंदर सजाया हुआ हैं लाइट्स पीली रंग की हैं।

इस दीवार पर पीला पेंट किया है।

इसके अंदर बाहर एक बस खड़ी है जो लाल रंग की है।

कुर्सियों पर लड़कियां बैठी हैं लड़कियां कुछ लिख रही हैं।

हॉल की छतें और दीवारें क्रीम कलर की हैं।

टेबल पर ऑरेंज कलर का कपड़े लगे हैं और साथ में--

चार दिवारी है और साथ में ही--

यह एक मकान बन रहा हैं।

उसके नीचे एक पोड़ी लगी है।

आस पास बहुत सारा सामान पड़ा है।

इस स्टेज को बहोत सुंदर सजाया हुआ है।

इस दुकान में डीजे का सामान पड़ा है।

इसके अंदर तीन आदमी दिखाई दे रहे हैं।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

येह कार बहुत सुंदर लग रही हैं।

इस पिक्चर में तीन अलमारियां बनी हैं।